गोलगपे वाले भइया है यहाँ एक बाइक लगा हुआ है जो कि ब्लू कलर का है और लिखा हुआ है दीपक चाट और यहाॅं पे बहुत सारे लोग खाने के लिए भी आये हुए है।

हमारे सामने एक बड़ी सी शोरूम है जिसमे चार कार खड़ी है एक वाइट कलर की एक ब्लैक की दो बले-वाइट कलर की मारुती सुजुकी का शोरूम है बहुत बड़ा है।

यह शॉप पूजा की है जो मंदिर में बनती है और वाइट कलर की मंदिर है रेड कलर की भी मंदिर है जोकि बहुत ही सुँदर लग रही है जोकि मार्बल की है यहां पर बहुत सारे मंदिर है।